बड़ी-सी बिल्डिंग है सीमेंट की पिलर ही पिलर है जंगल है नदी है हरे पर्दे है पेड़ है हरे पेड़ है।

अ आई.टी.एल. इडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट लिखा हुआ है रेड कलर की बार्डर है गेट बना हुआ है ब्लैक कलर का लोहै का ब्राउन कलर का।

मंदिर है मंदिर के जीने हैं अ और लो एक आदमी खड़ा है लाल टी-शर्ट पहने हुआ जीने बने हुए हैं और गैलरी --